पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस के दिवारे लाल और सफेद कलर से पेट हो रखी है। डाकघर --

पोस्ट ऑफिस जो हरे कलर का पैंट हुआ है।

रोड के इस साइड घर बने हुए हैं बिल्डिंग्स बनी हुई है।

बहुत सारी औरतें खड़े हुए कुछ औरतें बैठे हुए कुछ औरतें खड़े हुए हैं।

स्टेज पर फर्श है जो काले कलर का है उसे स्टेज पर तीन लड़कियां खड़ी है।

तलाप के उस पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

और इन्हेेंटों के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक टांग रखा है उसके हाथ में मोबाईल है।

केबिन बना हुआ है जिसकी टिन शेड की छत है।

फैली हुई है उस साड़ी के ऊपर ब्लू पिंक ग्रीन और ऑरेंज कलर के साड़ी ते बनी रखी हुई है।

साइड से एक सफेद गट्टा भी रखा हुआ है कपड़े का और भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

बहुत सारी माला रखे हुए है पीले कलर की माला गुलाबी कलर और सफेद कलर की माला रखी हुई।

लकड़ी का टेबल है उसके ऊपर दलिया रखी है जिसपे फुल रखी है।

लोहे की जाली की बेल्ट लगी है एक सामने सटल है।

इस फल की दुकान में केले रखे हुए हैं अंगूर रखे हुए हैं बादाम के पैकेट रखे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।